नीचे रेलिंग लगी हुई है।

सैमसंग का बोर्ड लगा हुआ है। जो काले कलर का है।

जो केसरिया रंग का है बिल्डिंग का कलर सफेद है।

दोनों किनारे सफेद कलर की गाड़ी खड़ी है।

एक फॉरच्यूनर है। एक काली गाड़ी खड़ी है।

काले टीशर्ट में अच्छी बॉडी बनाए हुए हैं।

सी_पी_यू रखा हुआ है। कंप्यूटर रखा हुआ है।

ई रिक्शा देते हुए नजर आ रहे हैं।

हल्का पीला कलर का मकान है दो लोग पैदल चलते हुए दिख रहे हैं।

उसमें हरे कलर ब्लू कलर की शिशा लगे हुए हैं।

ये श्री बटुक भैरव देवालय है।

कपड़ा पहेन के सरदार जी बैठे हैं।

जिसमें हरे कलर की कुर्सी लगी हुई है।

यह सिल्वर कलर की गिलास के तरीके--

एक हवाई जहाज रनवे है जिसमे--

यह गाड़ियों गाड़ियां धोने वाला--

काला पैंट और सफेद शर्ट पहना हुआ है।

सज्जन हैं जिनके पैर पर चोट लग गई है।

यह मिथिला बुक सेंटर है।

इसमें दो लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। दो लोग बैठे हुए हैं जिनका सर --

ये बाल काला दिख रहा है एक धारीदार टी शर्ट पहने हुए आदमी खड़ा है।

तरह तरह के बिल्डिंगें बनी हुई है।